नीले रंग के बोड पे सफ़ेद रंग से कॉलेज का नाम लिखा हुआ है।

उसको चारों और से दीयों से घेरा जा रहा है।

तथा यहाँ पर दीयों से भगवान जी की पूजा हो रही है यहाँ पे सभी व्यक्तियों ने --

जैसा की मैं देख पा रहीं हूँ यहाँ पे नदी के किनारे बहुत सारे लोग छठ पूजा का माहापर्व मना रहे हैं।

यहाँ पहाड़ों झाड़ियों और जंगलों से झरना बहते हुए नीचे पानी स में गिर रहा है।

यहाँ पर पहाड़ू के ऊपर बहुत सारे झड़ियाँ और घास फूस जमी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर एक तराजू रखा गया है तथा तराजू का बगल में एक लॉलीपॉप का डिब्बा दिखाई दे रहा है।

तथा चट्टानों पे बहुत सारि झाड़ियां जमीं हुई दिखाई दे रही है।